बनाते हुए दिखाई दे रहे है कुछ बच्चे बैठकर बना रहे है और कुछ बच्चे खड़े होकर चार्ट में कुछ करते हुए नज़र आ रहे है।

जोकि पानी की तरफ ही झुका हुआ दिखाई पड़ रहा है और उच्चे उच्चें पत्थर भी नज़र आ रहे है।

और देखिए यहाँ पर लोग खड़े हुए है और दरवाजे के पास में ही डस्टबीन रखा हुआ नज़र आ रहा है।

में यहाँ देख पा रही हु एक बहुत बड़ी सी फील्ड है जिसमे की पेड़ लगे हुए नज़र आ रहे है।

और ईमारत के ऊपर की तरफ़ कही कही पर थोड़ी थोड़ी सी घास नजर आ रही है।

में यहाँ पर देख पा रही हु इसमें स्लेब पड़ती हुई दिख रही है और देखिए काफ़ी मिटी का --